दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी लगाए गए है सड़कें भी निकली वी है उसके सामे मकान भी दिख रहे है कुछ छोटे कुछ बड़े मकान --

और नीचे दुकान में बिजली के खंबे सड़क में लगे और भी निकले हुए सामने बिजली के खंबे पेंट भी मकान में अच्छे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे --